छत दिख रहा है। बालकनी है बालकनी के ऊपर तीन औरत पंचासन योगा कर रहा है।

इसके पीछे जो बालकनी के ऊपर कुछ पौधा का टॉप दिख रा है जो हरा रंग का ब्लैक काला रंग का है इसके पीछे --

बड़ा सा सड़क दिख रहा है। एक आदमी पैदल चल रहा है। बहोत सा रिक्शा दिख रहा है।

यहां पे दोनों का उत्सव चल रहा है। सब बहोत आदमी जो पीला रंग का ड्रेस पहन के मटका तोड़ने के लिए एक के इस एक के ऊपर एक उठ उठ रहा है। बहोत सारा लोग आदमी औरत बच्चे देख रहा है। पीछे कुछ दुकान बंद दिख रहा है।